यह कुत्ता के सामने एक काले रंग की बाइक खड़ी है यह बाइक से थोडी दूर में वो तीन लोग खड़े है।

पिक्चर एक पहाड़ की है यह पहाड़ में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और पहाड़ के नीचे बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी है थोड़ी ही दूर में--

पिक्चर एक झील घ का किनारे का हैं यह किनारे में बहोत सारे लोग खड़े हैं और थोड़ी ही दूर में एक छोटा-सा गांव भी हैं।